दु छत के बिल्डिंग दिखत हे लाल कलर में रंगल हे खिड़की हे दिखत हे और ये नीचे एकर दिवाल हर खराब हो गयी से येलो कलर में दिखत है।

ये कितना अच्छा दृश्या है एकर रंग बिरंगा कलर दिखत हे पत्थल वत्थल घास व्वांस है बांध में।

ऐ डेम हवे एला बंधिनहे गिट्टी पत्थर से बड़ा सा एक गेट दिखत हवे काफी पुराना लग दिखत हे।

ये एक पेड़-पोधा दिखत हे तीन छत के बिल्डिंग दिखत हे रोड हे तार लाइनिंग हे यहाँ पे और अच्छा सुंदर दृश्य दिखत हे।

ये ज्वैलरी दूकान है सजावट होत हे ये दूकान में गोंदा फूल दिखत हे केला करदा केला रखीं है साइड साइड में ऊपर मे चमकती हुई दो लड़कियाँ दिखत हे गय- कार है सामने

महेंद्रा सुपर मार्केट कर बोर्ड लगी से हेबड़ा सा किराना दुकान है सुपर मार्केट ईहां आदमी मन काफ़ी जन-- काफी ज्यादा दिखत हे समान भी खूब जादा है दिखत है।

पोखरा तालाब हे हरा-भरा जंगल दिखत हे एहां पे पेड़ पौधा पानी बहुत ज्यादा है पोखरा तालाब में कलर कालर कर फूल दिखत हे जगह--